और आदमी के पीछे एक लड़की के मूर्ती बनाकर है।

सोनपुर मेला टू थाउजेंड नाइनटीन ।

और एक आदमी पीछे खड़े हैं।

जिसमें बहुत सारे सामान रखाया गया है।

और आदमी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है।

जिसमे बहुत सारा गाड़िया चल रहा है।

जो कि दीवार सफेद रंग का लगा--

चार लाइटें जल रहा है।

इसमें बहुत सारे सामान रखा हुआ है।

और बहोत सारे टीना है जोकि अलग अलग रंग के हैं।

इसमें बहोत सारा लाइटें जल रहा है।

और शीशे से बने हुए दीवार भी लगा के है।

इसमें लंबा सा टेबल लगा के है।

इसमें दीवार ब्लू कलर का लगा के है।

और ये रेस्टोरेंट का अंदर का पिक्चर दिखाई दे रहा है।

ये एक दुकान दिख रहा है।